और ये है जैसे की आइस क्रीम की शॉप साथ में इसकी टॉय शॉप भी है।

सी_एम एटी हैं जैसे की काफी अलग अलग वैरायटी हैं।